यहा पर मुझे एक पंडित जी दिखाई दे रहे जो की आगे साफ सफ़ाई का कार्य कर रहे और यहा पे कुछ रेलिंग भी लगी हुई है।

और यह कुछ एक्सरसाइज करते डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं हम कह सकते हैं यह कुछ सीख रहे हैं और इन लोगो ने जींस पहनी हुई है बच्ची ने फ्रॉक पहनी हुई है और यह बहुत ही अच्छा लग--

और ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्यूकी यहा पर एक मुझे कॅमेरामन भी दिखाई दे रहा है पीछे की और मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान बहुत ही साफसुथरा और सुंदर--

आसमान मे बादल दिखाई दे रहे और ये तस्वीर देखने पर काफी ज्यादा शानदार और एट्रैक्टिव दिखाई दे रही है ये तस्वीर एक विलेज एरिया की भी कह सकते है।

जिसके बाहर मुझे बहुत ही मात्रा मे भीड़ दिखाई दे रही है और ये एक धार्मिक भीड़ है पीछे की और मुझे यहा पर बहुत सारा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे पेड़ों का कलर हरा-भरा दिखाई दे रहे आसमान बिलकुल साफ़सुतरा है और ये फॉल्टर फ़िल्टर --

तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा रूम नजर आ रहा है रूम में मुझे भगवान जी की फोटो लगी हुई दिखाई दे रही है जिसके आउटसाइड कुछ दिए लगाए हुए दिख सकते हैं।